यहां पे बहुत बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा हुआ है यहां लोहा का ढक्कन लग गया है।

यहां पे एक बहुत बड़ा सा हॉल है जिसमें तीन आदमी उधर काम कर रहे हैं।

उधर कूलर दिख रहा है मगर कई प्रकार का सामान रखे गए हैं।

यहां पे एक गाड़ी में हेलमेट लगी हुई है यहां पे एक टी_वी_एस लगी हुई है।

उधर माटी खना रहा है।

ये हेलमेट पहने हुए हैं।

लेडीज पार हो रही है इधर एक बाइक खड़ा है।

यहां पे एक आदमी खड़ा है अंदर लाइटें जल रहा है।

बहुत सारे बेड भी लगाए गए हैं।

और दो पंखा है इधर कई सारी खिड़की लगी हुई है।

उधर एक छोटा सा घर है उसके बाद उन्हें वृक्ष है।

उधर एक बहुत बड़ा सा टावर है।

यह रेलवे स्टेशन है।

इधर मोटर साइकिल खड़ी है उधर डस्टबिन है उधर हॉल में आदमी खड़ा है।

यह एक बहुत बड़ा सा फील्ड है जिसमें प्लेयर लोग अपने क्रिकेट खेल रहे हैं।

बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है यहां पे दो तीन हेलमेट दिख रहे हैं यहां पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग दिख रही है।

प्लास्टिक में भी चार्ट पेपर रखे गए--

इधर एक लाल झंडा है इधर एक थोड़ा सा ग्राउंड है।

यहां पे एक छोटा सा रूम है इसके बगल में लिफ्ट दिए गए हैं वहां पे फूल का माल टंगा हुआ है वहां पर एक छोटा सा कैमरा है।